और हमें यहाँ कुछ दिवाल भी दिखाई दे रहे हैं।

और हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है नीचे हमें घास दिखाई दे रही हैं।

हमे यहाँ पर बहोत शारा पानी दिख रहा है नदी शी दिख रही है ये जिसका पानी नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ घर शा बना हुआ दिख रहा है हमे और ब अ पीछे बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ घास भी दिखाई दे रही है।

-- दिखाई दे रही है प्रवेश द्वार में हमें एक ब्लू कलर का कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर हमें पेड़ दिखाई दे रहा है और हमें कोई सामने जगह पड़ी हुई--

ओठ किलोमीटर और यहाँ बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने अच्छी म जमीन पड़ी दिख रही है।

यहाँ पर हमें यहाँ एक लेडीज और एक छोटी-सी लड़की दिखाई दे रही है।

और हमे बहोत बड़ी लाइट दिखाई दे रहा है दो बाइके खड़ी हुई दिख रही है ह म प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है चुहिया राखी लगी हुई दिख हैं।

हमे सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है।

-- और हमें दो तीन बाइक दिख रही है एक आदमी दिखाई दे रहा है ये कोई स्कूल ले जैसा लग रहा है येलो कलर का पैंट हुआ है एक लेडीज हमें साइड में बैठी हुई दिखाई दे रह--

हमें यहाँ पर एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा हैं जो रेड कलर का हैं और हमें बहोत सारी ईटे सामने रखी हुई दिखाई दे रही हैं।